ये जो है प्रशांत मैचिंग हाउस है। प्रशांत मैचिंग हाउस मे जो है अ कपड़े की जो है हर मैचिंग की कपड़े की दुकान अभी जो है ठंड के मौसम में --

अ बोर्ड लगा हुआ हैं। इसमे दिनांक छ दिसंबर दो हजार सोलह दिन मंगलवार का जो है ये बोर्ड लगी हुई हैं यहां कुछ ग्रामीणों को बुलाया गया हैं और अंबेडकर जी के बारे में जो है --